सभी लोग इनकी पिक्चर ले रहे हैं दूल्हा दुल्हन जो कि नीचे बैठे हुए हैं।

और लाइटें जगी हुई हैं दिन का समय है।

अच्छे तरीके से यहां पे रखा गया हैं।

यह एक पहाड़ है जिसमें बहोत ही सुंदर बीच में जर्रा बह रहा है आसपास वृक्ष लगे हुए है छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

बहोत ही सुंदर जगह पे ये मॉल बनाया हुआ है इसमें इसके अंदर टी_वी आ रहा है जिसे वो कि सिनेमा --

ये एक बहोत ही सुंदर पार्क है जिसके अंदर बहोत ही सुंदर अलग अलग तरह के--

एक पार्क बनाई हुई है सूरज दिख रहा है सामने अस्त हुआ सामने पहाड़ दिख रहे हैं।

ये एक शादी का सोफा बना हुआ है जिस पे दूल्हा दुल्हन बैठे जाते हैं।

ये पुरानी बहोत ही पत्थर की जोकि इमारत होती है वो दिख रही है घूमने का स्थान है।

पिक्चर तस्वीर खींचा रहा है।

ये लग रही है दुकान किसने हर तरह की आइसक्रीम यहां पे प्रोवाइड की जाती है।

पेड़ पौधे दिख रहे हैं और ये सड़क के किनारे पे--

कुछ गाड़ियों को खड़ा किया गया है और कुछ नीचे--

बजार क्यों है इसमें हर एक तरह की दुकानें है --